दीवाल पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है।

ये ट्रैक्टर लाल रंग का है और अंदर से यह ट्रैक्टर काला रंग का है।

इस फोटो में एक बड़ा सा दुकान है जिसका दीवाल सफेद रंग का है।

इस दृश्य में सामने एक बड़ा सा दुकान है जिसका दीवाल सफेद रंग का है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा गड्ढा है।

उसके अंदर में बहुत ही अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।

आसमान पूरा नीला है और धूप निकला हुआ है।

और उधर एक रूम है जिसका दीवाल सफेद रंग का है।

इस फोटो में सामने एक काफी बड़ा सा वर्कशॉप है।

बहोत सारे टायर है पीछे काफी सारे बड़े बड़े रैक है।

रैंकों पर भी काला रंग का टायर रखा हुआ है जिसमें सभी में मार्क बना हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ा सा दुकान है जिसका दीवाल सफेद रंग का है।

ऊपर कुछ डिजाइन बना हुआ है जो पीला रंग का है।

और एक सामने फ्रिज है इसमें बहुत सारा केक रखा हुआ है।

सामने लोहा का बड़ा सा स्टैंड बना हुआ है।

का दीवाल का रंग पीला है सीलिंग सफेद है और जो बाहर से सीलिंग के ऊपर वाले छत पे दीवाल जैसा है वो लाल रंग का है।

दुकान के अंदर में ऊपर में ट्यूबलाइट लगा हुआ है।

इस रूम के सामने में काउंटर लगा हुआ है जिसमें सफेद रंग का सनमाइका चिपका हुआ है उस पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

इसमें बहोत सारा गेट है और खिड़की है जो कि काफी लक्जरी है।

नीचे कारपेट बिछा हुआ है जो की डिजाइन वाला है पूरा।

इस फोटो में सामने में नीचे एक कैरेट है उसके नीचे एक कागज है जो न्यूज पेपर है।